यहाँ पर बहुत से आदमी ढोल और निर्यता करते हुए आ रहे हैये जगह काफी आकर्षक है ।

इसके किनारे एक बिल्डिंग भी है इस पेट्रोल पंप में सीढ़ी भी लगा हुआ है।

हॉल में टी.वी. भी लगा हुवा है यहाँ पर पेट्रोल पंप में फिर तेल भी मिलते है।

यहां पर बहुत से गाड़ी आकर तेल भरते हैं यह पर एक भी खड़ी --

यहाँ पर ए.टी.एम. में बहुत से आदमी लाइन पर खड़े है।

इस पहाड़ पर छोटे-छोटे और बड़े-बड़े बहुत से पौधे है।

एक भवन पर कपड़े का दुकान है यहाँ टूलेट्स में--

टीयूलेस के तार मिलते हैं यहां पर एक आदमी खड़ा है।

यह एक घर है यह घर काफी बड़ी है।

बड़े-बड़े घर एक घर मंदिर है।

सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है।

एक ग्राउंड है इस ग्राउंड में एक झूला लगा हुआ है।

यहां पर रात में देवता को विसर्जन करने ले जा रहे ।

यह स्विमिंग पूल में आदमी आ के स्विमिंग कर--

इस ए पटरी के किनारे म बड़े छोटे-छोटे --

यहां पर एक औरत भी बैठी हुई है दुकान में ।